हरे कलर की और अंदर की साइड दरिया बिछी हुई हैं टेबल कुर्चिया लगी हुई है कुर्चिया लोहे की हैं।

कुछ सफेद कलर का है तो कुछ ब्राउन कलर के हैं।

बाहर के साइड एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

एक आदमी है दूसरा आदमी बाहर खड़ा है मोटरसाइकिल पड़ी है सामने बहुत सारी दुकानें लगी हुई है पीछे भी --

यहां पर सामने स्टैंड है स्टैंड के फ्रिज है केक रखने वाला यहां पर तरह तरह का केक पड़ा है।

सभी केक के अलग-अलग डिजाइन है कुछ पीला है कुछ लाल है कुछ सफेद है कुछ ब्लैक है कुछ केसरिया कलर है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है सफेद कलर का स्वेटर जींस और जूते पहने हुए है चेहरे पे टोपी डाली हुई है।

बाहर लाल कलर की कुर्सियां पड़ी है एक आदमी बैठा है चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है।

इस तस्वीर के अंदर झूले है झूलो के अंदर--

यहां पर सामने बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के अंदर के साइड एक ट्रैक्टर है एक सफेद कलर की गाड़ी है।

यहां पर बहोत बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए हैं।

यहां पर हरे-हरे कलर का कुछ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बहोत सारी तरह-तरह की लाइटें लगी हुई है।